लोग जमा है और दो मंज़िल का मकान भी दिखाई देगा यहाँ बहोत अच्छी बहोत खूबसूरत --

यहाँ पे देखिये लेबर मिस्त्री कितना अम्म ढ़ेर सारी एवं मिस्त्री दिखाई दिख रहे हैं और यहाँ पे जनता घोड़ा है जो देखने में बहुत खूबसूरत है।

ये कितना बढ़िया मकान दिखाई दे रहे है और यहां पे देखिए कुर्सी भी दे रहे है